यह एक स्टेडियम है। यहां पे सूरज छिपता हुआ दिखाई दे रहा है। वह सारे बच्चे हैं और स्टेडियम के लेफ्ट साइड में पवेलियन भी बना हुआ है उसके ऊपर टीन सेट पड़ा हुआ है।

यह एक ग्राउंड है। ग्राउंड में बहुत सारे लड़के एक जैसी ड्रेस में खड़े हुए हैं जोके क्रिकेट टीम के हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं।

यह एक अमरोहा का स्टेडियम है जो गाँधी मूर्ति के निकट है। यहाँ पे दो गेट है। सामने एक मंगलम फ़िल्म्स का भी घर दिख रहा है।

एक ग्रीन रंग का डस्टबिन और एक नीले रंग का डस्टबिन भी रखा है। कुर्सियां पड़ी है जिनका रंग लाल और सफ़ेद है। ट्रेन का डिब्बा ए.सी. दिखाई पड़ रहा है |

यह उगता हुआ सूरज है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। एक पेड़ है जे झड़ा हुआ है और सामने टावर भी दिख रहा है।

यह भी एक होटल है | होटल में लाल रंग की कुर्सियां हैं और मेज़ पे भी लाल रंग का मेज पोज़ डाल हुआ है।

यह रेस्टोरेंट में एक टेबल पे खाने का सामान रखा हुआ है। इसमें डोसा है और साथ में दो सब्जियां हैं।